आ मावे वगैरा रखे गए हैं बड़े कचोरी वगैरा है और यहां भोजन बने जाते हैं।

हमें इस ग्राउंड के बाद में वहां आगे देखे तो बहुत ही बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है।

और पीछे अंधेरा टाइप दिखाई दे रहा है नीचे लोहे के जंगले लगे हुए झाले लगे हुई है चारों ओर --

जो पत्थरों से बनी हुई है और इधर पानी के जस्ट इधर ये एक बहोत बड़ा पेड़ लगा हुआ है पेड़ के ऊपर कुछ सफेद कलर का --

यहां पर कांच की बेंच लगी हुई है अंदर चार्ट है चार्ट के ऊपर लिखा हुआ है ब्रेकफास्ट दीस डिनर और लंच के बारे में कुछ लिखा हुआ है।

हरे-हरे कलर का कुछ लगा हुआ है उसके ऊपर गोल-गोल सर्कल के रूप में टायर लगे हुए हैं जो की लोहे के हैं।

यहां पर सामने बहुत सारी कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं जो कि प्लास्टिक में पैक हैं।

कुछ सामान पैक किया हुआ है यहां पर पूरी पूरी चीजें पैक की हुई हैं।

सामने दीवार के ऊपर कुछ डिजाइन बनाई हुई है और कुछ खिड़कियां सामने कुछ और तेवर महिलाएं कुछ आदमी खड़े --

इस फोटो के अंदर एक कमरा बना हुआ है कमरे की दीवारों के ऊपर फोटो चिपके हुए हैं।

बच्चों के खेलने के लिए खिलौने पड़े हैं एक ब्लैक कलर की कुर्सी पड़ी है बीच में कुछ बेंच पड़ी है बेंच के ऊपर सामान पड़ा है।